वह देखो एक लड़का है कुर्सी पर बैठे एक लड़की है वह लड़की उधर बेंच पे देख रहा है क्या हो रहा है।

यह देखो बादल है बादल में देखो उजला-उजला दिखाई दे रहा है और सब पहाड़ी है और इधर पानी जाने वाला है जो की धान होगा लगा उसमें पटाएगा और फिर देखो --